अह कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहां बच्चे व्यायाम करते हुए दिख रहे हैं।

एक जंगल का चित्र दिख रहा है।

बाजू आजू बाजू में बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला रंग का आकाश दिख रहा है।

दो बैठने के स्टूल दिखाई दे रहे हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है।